inserting pictures and tables पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
pictures प्रविष्ट करना
pictures format करना
presentation के अंदर और बाहर hyperlink करना और
tables प्रविष्ट करना
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
presentation sampleimpress odp खोलें जिसे हमने पहले सेव किया है
यह file और एक image file इस tutorial के पेज पर code files link में प्रदान की गई है
कृपया file को download और extract करें
एक copy बनाएं और फिर अभ्यास के लिए उनका उपयोग करें
अब सीखते हैं कि presentation में picture कैसे प्रविष्ट करें
पहले slides pane से slide 4 चुनें
standard toolbar में duplicate slide icon पर क्लिक करके duplicate slide बनाएं
slide के title textbox पर click करें
शीर्षक को long term goal से open source funny में बदलें
नीचे body textbox के अंदर click करें
standard toolbar में insert image icon पर click करें
वैकल्पिक रूप से menu bar में insert menu और फिर image विकल्प पर click करें
insert image dialog box प्रदर्शित होता है
उस स्थान पर जाएं जहां आपकी picture सेव है
मैं desktop पर जाऊंगी और picture opensourcebart png चुनूंगी
ऊपरी दाएं कोने में open button पर click करें
picture slide में प्रविष्ट हो गई है
जैसा कि पहले बताया गया है यह image code files link में प्रदान की गई थी
ctrl + z कीज दबाकर बदलाव को अन्डू करें
body textbox के centre में 4 icons वाले एक छोटे box पर ध्यान दें यह त्वरित एक्सेस insert toolbar है
image को प्रविष्ट करने के लिए insert image named insert toolbar में निचले बाएं icon पर click करें
opensourcebart png चुनें और ऊपरी दाईं ओर पर open button पर click करें
image slide में प्रविष्ट हो गई है
अब सीखते हैं कि image का आकार और रूप कैसे बदलें
यहां image के चारों कोनों में control points named आठ handles हैं
cursor के double vertical arrow में परिवर्तित होने तक किसी भी control point पर mouse घमाएं
अब किसी एक control point पर click करें और बाएं mouse button को पकड़कर रखें
अपनी पसंद के अनुसार image आकार बदलने के लिए control point को नीचे ऊपर बाएं या दाएं खींचें
कोने के control points को खींचने से हमें अनुपातिक लंबाई और चौड़ाई मापने में मदद मिलती है
image का आकार बदलने के बाद textbox में कहीं भी click करें
ctrl और z कीज़ दबाकर बदलाव को अन्डू करें
इसीतरह हम slide में अन्य objects जैसे charts और audiovideo clips प्रविष्ट कर सकते हैं
इन सब संभावनाओं का बाद में स्वयं अभ्यास करें
अब hyperlink के बारे में सीखते हैं
hyperlinking हमें निम्न अनुमति प्रदान करता है:
slide से slide में स्थानांतरित होना
presentation से document खोलना
presentation से web page खोलना
पहले सीखते हैं कि presentation में अन्य slide में hyperlink कैसे करें
slide के title textbox पर click करें
term पहले शीर्षक को long term goal से table of contents में बदल change
फिर हम slides pane में इस पर क्लिक करके इस slide को नंबर 2 position पर स्थानांतरित करेंगे
mouse button छोड़े बिना इसे upward की ओर नंबर 2 position पर खींचें
अब mouse button को छोड़ दें
body textbox पर click करें और निम्न text type करें
overview
open source funny
अब text overview की line चुनें
standard toolbar में insert hyperlink पर click करें
screen पर hyperlink dialog प्रदर्शित होता है
dialog box के बाएं pane पर document विकल्प चुनें
target in document section में target field के दाईं ओर जाएं
target in document named circle icon पर click करें
screen पर target in document dialog box खुलता है
इसमें presentation में मौजूद सभी slides की सूची सम्मिलित होती है
आप सूची से कोई भी slide चुन सकते हैं जिसे आप hyperlink करना चाहते हैं
मैं सूची से slide 3 पर double क्लिक करके इसे चुन रही हूं
apply button पर click करें और फिर close button पर click करें
अब हम देखते हैं कि slide 3 target field में प्रदर्शित होती है
निचले भाग पर apply button और फिर close button पर click करें
फिर body textbox के बाहर कहीं भी click करें
अब जब आप hyperlinked text पर cursor घूमाते हैं तो cursor प्वाइंटिंग finger में बदल जाता है
इसका अर्थ है कि hyperlinking सफल था
ctrl की दबाएं और hyperlinked text पर click करें
हम संबधित slide पर पहुंच जायेंगे
अब हम सीखेंगे कि इस presentation से अन्य document से hyperlink कैसे करें
पहले table of contents नामक slide पर वापस जाएं
body textbox के अंदर click करें
आखिरी line के रूप में external document type करें
अब external document वाक्य चुनें
standard toolbar में insert hyperlink icon पर click करें
hyperlink dialog box में बाएं pane पर document section चुनें
अब path field के दाईं ओर जाएं
open file named folder icon पर click करें
screen पर open dialog box प्रदर्शित होता है
यहां हम वह document चुनते हैं जिसे हम hyperlink करना चाहते हैं
मैं desktop पर जाऊंगी और resume odt फाइल चुनूंगी
फिर ऊपरी दाएं कोने पर open button पर click करें
ध्यान दें कि resume odt की पूर्ण location path field में प्रदर्शित होती है
निचले भाग पर apply button और फिर close button पर click करें
अब body textbox के बाहर कहीं भी click करें
ध्यान दें कि external document text hyperlinked text हो गया है
ctrl की दबाएं और hyperlinked text पर click करें
हम संबंधित document पर पहुंच जायेंगे जिसे हमने चुना था
हमारी स्थिति में यह हमें resume odt पर ले जाता है
web page से hyperlinking करना समान है
फिर से body textbox पर click करें
type ubuntu libreoffice in another line
ubuntu libreoffice वाक्य चुनें
menu bar में insert menu पर click करें और फिर hyperlink विकल्प पर click करें
hyperlink dialog box में default रूप से internet section बाएं pane में चयनित है
और hyperlink type section में web radio button भी चयनित है
अब url field में www libreoffice org type करें
निचले भाग पर apply button और फिर close button पर click करें
body textbox के बाहर कहीं भी click करें
ध्यान दें कि ubuntu libreoffice text hyperlinked text हो गया है
इस प्रदर्शन के अगले भाग के लिए हमें internet connectivity की आवश्यकता होगी यदि आपके पास यह नहीं है तो इस भाग को स्कीप कर दें
ctrl की दबाएं और hyperlinked text पर click करें
हम संबंधित url पर पहुंच जायेंगे
अब हम सीखेंगे कि अपनी presentation में tables कैसे प्रविष्ट करें
tables data को columns और rows में व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी हैं
slides pane से short term strategy नामक slide चुनें
standard toolbar में slide layout icon पर click करें
title and 2 content layout पर click करें
अब slide के बाईं ओर के body textbox पर जाएं
insert toolbar में insert table named icon पर click करें
screen पर insert table dialog box प्रदर्शित होता है
default रूप से number of columns 5 और number of rows 2 दर्शाता है
हम plus और minus buttons का उपयोग करके numbers को बढ़ा और घटा सकते हैं
मैं number of columns 2 और number of rows 5 set करूंगी
दाईं ओर के कोने पर ok button पर click करें
यह slide में table प्रविष्ट करने का एक तरीका है
standard toolbar में table icon पर क्लिक करके table प्रविष्ट करने का दूसरा तरीका है
यहां हम प्रदर्शित grid में table के लिए rows और columns मैन्युअली चुन सकते हैं
ध्यान दें कि यहां table के आसपास control points हैं
table को बढ़ा करते हैं ताकि टाइप किया गया text अधिक पठनीय हो
निचले control point पर click करें और बाएं mouse button को पकड़कर रखें और इसे नीचे की ओर खींचें
अब यहां दर्शाए गए अनुसार table में कुछ text type करें
header row का font bold करें और text को केंद्र में रखें
ऊपरी row में text चुनें
sidebar में properties section पर click करें
bold icon और फिर align center icon पर click करें
अब table का रंग बदलते हैं
पहले इस तरह mouse को खींचकर table का पूर्ण text चुनें
properties section में table design properties पर जाएं और कोई भी table style चुनें
मैं सूची से मेरी पसंद का table style चुनूंगी
body textbox के बाहर कहीं भी click करें अब देखें table कैसा दिखता है
save icon पर क्लिक करके अपनी presentation में हमारे द्वारा किए गए सभी बदलावों को सेव करें और फिर फाइल बंद करें
इसी के साथ हम इस स्पोकन tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने निम्न सीखा:
pictures प्रविष्ट करना
presentation में और बाहर hyperlink करना और tables प्रविष्ट करना
नियतकार्य के रूप में practiceimpress odp फाइल खोलें
3rd slide में picture प्रविष्ट करें
4th slide पर 2 rows और तीन columns का table बनाएं
column 2 की row 2 में slide 3 type करें और इस text को 3rd slide में hyperlink करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद